सी C में अरिथ्मैटिक ऑपरेटर्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्नलिखित के बारे में सीखेंगे अरिथ्मैटिक ऑपरेटर जैसे कि Addition जैसे ab Subtraction जैसे a ब
Division जैसे aब
Multiplication जैसे ab Modulus जैसे ab इस ट्यूटोरियल को रिकार्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबुंटू 1110 उबुंटू में जीसीसी और g कंपाइलर वर्जन 461 अब मैं एक सी प्रोग्राम की मदद से इन अरिथ्मैटिक ऑपरेशन्स के उपयोग को समझाऊँगा
मैंने पहले ही प्रोग्राम लिख लिया है
अतः मैं एडिटर खोलूँगा और कोड समझाऊँगा
यहाँ अरिथ्मैटिक ऑपरेटर्स के लिए सी प्रोग्राम दिया गया है
पहले दो स्टेटमेंट्स वैरिएबल घोषित और परिभाषित किए गए हैं
अगले दो स्टेटमेंट्स में आ की वेल्यू 5 निर्धारित की गयी है
ब की वेल्यू 2 निर्धारित की गयी है
अब देखते हैं कि एडिशन ऑपरेटर कैसे काम करता है
सी आ और ब का योग है
यह प्रिंटफ स्टेटमेंट स्क्रीन पर आ और ब का योग प्रदर्शित करता है
यहाँ1602f दशमलव बिंदु के बाद दो अंकों की स्पष्टता दर्शाता है
अगले स्टेटमेंट में सी आ और ब का गुणनफल है
यह प्रिंटफ स्टेटमेंट स्क्रीन पर आ और ब के गुणनफल को प्रदर्शित करता है
देखते हैं कि ये दोनों ऑपरेटर कैसे काम करते हैं
हम निम्न लाइनों के लिए कमेंट करेंगे
टाइप करें सेव पर क्लिक करें
फाइल को c एक्सटेंशन के साथ सेव करें
मैंने अपनी फाइल arithmeticसी नाम से सेव की है
एक साथ Ctrl Alt और ट कीज़ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें
कोड को कंपाइल करें टर्मिनल पर निम्न टाइप करें
जीसीसी स्पेस अरिथमेटिक डॉट सी स्पेस माइनस ओ स्पेस अरिथ एंटर दबाएँ
कोड को एक्जीक्यूट करने के लिए arithटाइप करें
एंटर दबाएँ
आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है
यह दर्शाता है कि 5 और 2 का योग 700 है और 5 और 2 का गुणनफल 1000 है
अब आपको स्वयं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का अभ्यास करना चाहिए
एडिशन ऑपरेटर को सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर से बदल कर देखें
आपको परिणाम 3 प्राप्त होना चाहिए
प्रोग्राम और स्टेटमेंट्स के अंतिम समूह पर वापस आते हैं
अब मैं डिविजन के लिए कोड समझाऊंगा
यहाँ से मल्टी लाइन कमेंट हटाएं
इन स्टेटमेंट्स में सी आ बाय ब इंटीजर डिविजन की वेल्यू संचित करता है
कृपया ध्यान दें कि इंटीजर डिविजन में भिन्नात्मक भाग को छोड़ दिया जाता है
प्रिंटफ स्टेटमेंट डिविजन आउटपुट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है
इस स्टेटमेंट में हम रियल डिविजन कर रहे हैं
यहाँ एक ऑपरेंड को floatके रूप में कास्ट किया जाता है
हमने कास्ट वैरिएबल आ टाइप किया है
अब आ एक एकल ऑपरेशन के लिए फ्लोट वैरिएबल के रूप में कार्य करेगा
प्रिंटफ स्टेटमेंट रियल डिविजन का आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है
रिटर्न 0 टाइप करें और एंडिंग कर्ली ब्रैकेट बंद करें
सेव पर क्लिक करें
कंपाइल करने के लिए टर्मिनल पर वापस आएं और कोड को एक्जीक्यूट करें
कंपाइल करने के लिए टाइप करें जीसीसी स्पेस अरिथमेटिक डॉट सी माइनस ओ स्पेस अरिथ एंटर दबाएँ
कोड को एक्जीक्यूट करने के लिए टाइप करें arith और एंटर दबाएँ
आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है
हमारे पास एडिशन और मल्टिप्लिकेशन ऑपरेटर के पिछले आउटपुट हैं
हमारे पास 5 बाय 2 का इंटीजर डिविजन 2 है
हम देख सकते हैं कि इंटीजर डिविजन में भिन्नात्मक भाग को छोड़ दिया जाता है
फिर हमारे पास 5 बाय 2 का रियल डिविजन 250 है
रियल डिविजन में अपेक्षित परिणाम प्राप्त होते हैं
हमने ये परिणाम प्राप्त करने के लिए टाइप कास्टिंग का उपयोग किया है
अब मान लें कि मैं C में वही प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ
देखते हैं कि क्या मैं C में भी वही कोड उपयोग कर सकता हूँ
पता लगाते हैं
एडिटर पर वापस जाएँ
यहाँ एक C कोड है
ध्यान दें कि हेडर सी फाइल हेडर से अलग है
यहाँ नेमस्पेस का भी उपयोग किया गया है
यह भी ध्यान दें कि C में आउटपुट स्टेटमेंट काउट है
इसलिए इन भिन्नताओं के अतिरिक्त दोनों कोड काफी समान हैं
सेव पर क्लिक करें
सुनिश्चित करें कि फाइल cpp एक्सटेंशन के साथ सेव हो गई है
मैंने अपनी फाइल को arithmeticसीपीप नाम से सेव किया है
कोड को एक्जीक्यूट करें और देखें कि हमें क्या परिणाम प्राप्त होते हैं
टर्मिनल खोलें और टाइप करें g स्पेस अरिथमेटिक डॉट सीपीप स्पेस माइनस ओ अरिथ एंटर दबाएँ
कोड को एक्जीक्यूट करने के लिए टाइप करें arith और एंटर दबाएँ
यहाँ आउटपुट प्रदर्शित होता है
अतः हम देखते हैं कि परिणाम सी प्रोग्राम के समान हैं
एकमात्र अंतर आउटपुट्स की परिशुद्धता में है
अब इस ट्यूटोरियल को सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि अरिथ्मैटिक ऑपरेटर्स का उपयोग कैसे करें
एक नियत कार्य के रूप में मॉड्यूलस ऑपरेटर के उपयोग को बताने के लिए एक प्रोग्राम लिखें
कृपया ध्यान दें कि मॉड्यूलस ऑपरेटर से डिविजन का शेषफल प्राप्त होता है
जैसे सी a ब आपको परिणाम 1 प्राप्त होना चाहिए
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाओं का आयोजन करती है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
अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट एटी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है
स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ